मेरे सामने एक मार्केट हैं जहाॅं पे लिखा है सेव ट्वेंटी प्रतिशत।

एक फ्लाइट है जिसका नाम है इंडिगो जो कि व्हाइट एंड ब्लू कलर में--

मेरे सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

सामने ये मंदिर है मंदिर जो है।

सामने एक होटल है होटल में--

मुझे सामने एक बुद्ध की प्रतिमा दिखाई दे रही है।

हाउस के नीचे में सफेद कलर का लैंप बना जिसमे--

जिसके साइड में एक लड़का खड़ा हुआ है।

मुझे एक वॉटर फॉल दिखाई दे रहा है जिसमें से पानी नदी में बहते जा रहे हैं।

और अगल बगल में जो पेड़ है उनके पौधे बहुत से हरे भरे हैं।

इसमें दो स्टेचु दिखाई दे रहें हैं। स्टेचु को --

डाल रखी है आँखो मे चश्मा लगा रखा है।

और साइड साइड में कुछ पेड़ पौधे हैं जिनके पत्ते हरे हैं।